synfig का उपयोग करके draw a toy train के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
मूल आकृतियाँ बनाना आकृतियों में रंग भरना ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप एवं डुप्लिकेट करना तथा
guideline का उपयोग करके आकृतियों को संरेखित करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu linux 1404 os
synfig version 102
आइए synfig खोलते हैं
सबसे पहले हम टॉय ट्रेन के डिब्बे बनाएँगे
इसके लिए rectangle tool चुनें
tool options में जाँच करें कि create a region layer को चुना गया है या नहीं
अब canvas पर एक आयत बनाएँ
लेयर का नाम बदलकर part1 करें
parameters panel पर जाएं और रंग को बदलकर green कर दें
अब transform tool पर क्लिक करें
फिर आकृति को डीसेलेक्ट करने के लिए canvas के बाहर क्लिक करें
canvas पर कोई भी आकृति बनाने के बाद इस चरण को करना याद रखें
आइए हमारी फ़ाइल को सेव करते हैं
file पर जाएँ save as पर क्लिक करें
फ़ाइल का नाम बदलकर toytrainanimation करें
इसे अपने desktop में सेव करें
अब एक बार फिर rectangle tool चुनें
दिखाए गए अनुसार पिछले आयत के केंद्र में एक आयत बनाएँ
यह ट्रेन की खिड़की होगी
आइए इस लेयर का नाम बदलकर window करते हैं
आइए polygon tool पर क्लिक करते हैं
tool options में जाँच करें कि create a region layer को चुना गया है या नहीं
दिखाए गए अनुसार आयत के ऊपर एक समलंब चतुर्भुज बनाएँ
समलंब चतुर्भुज को बंद करने के लिए आरंभ बिंदु पर क्लिक करें
इस लेयर का नाम बदलकर part2 करें
मैं इसका रंग बदलकर लाल करूँगी
अब transform tool चुनें
layers panel पर जाएँ
सभी लेयर चुनें और उन्हें ग्रुप करें
ग्रुप लेयर का नाम बदलकर compartment3 करें
handle के नारंगी बिंदु का उपयोग करके लेयर का आकार बदलें
handle के हरे बिंदु का उपयोग करके इसे canvas के दाईं ओर ले जाएं
ctrl और s कुंजी दबाकर फ़ाइल सेव करें
इसके बाद आइए ट्रेन का पहिया बनाते हैं
कोई भी आकृति बनाने के बाद उसे डीसेलेक्ट करने के लिए canvas के बाहर क्लिक करना याद रखें
circle tool चुनें
tool options में create a region layer चुना जाना चाहिए
दिखाए गए अनुसार एक वृत्त बनाएँ और इसके रंग को बदलकर गहरा नीला कर दें
अब star tool चुनें
tool options में create a star layer चुना जाना चाहिए
कर्सर को वृत्त के केंद्र में रखें और एक तारा बनाएँ
अब transform tool चुनें
देखें वहाँ 1 handle और 2 बिंदु हैं
आकृति की स्थिति बदलने के लिए हैंडल के हरे बिंदु पर क्लिक करके उसे ड्रैग करें
रोटेशन के लिए handle में मौजूद नीले बिंदु का प्रयोग करें
मध्य में स्थित हरा बिंदु तारा आकृति के बाहरी किनारे को समायोजित करने की अनुमति देता है
अंतिम बिंदु आकार बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है
तारा और वृत्त दोनों लेयरों को चुनें
उन्हें ग्रुप करें और फिर नाम बदलकर wheel1 करें
इस ग्रुप लेयर का आकार बदलें और इसे डिब्बे के नीचे रखें
अब wheel1 group layer को डुप्लीकेट करें
इसका नाम बदलकर wheel2 करें और डिब्बे के दूसरे सिरे पर ले जाएँ
अब सभी ग्रुप लेयर चुनें
उन्हें पुनः ग्रुप करें और compartment3 नाम दें
अब duplicate आइकॉन पर दो बार क्लिक करें
डुप्लिकेट की गई ग्रुप लेयरों को क्रमशः compartment2 और compartment1 नाम दें
compartment2 ग्रुप लेयर चुनें
shift key का उपयोग करके handle के मध्य हरे बिंदु को ड्रैग करें
compartment1 ग्रुप लेयर के लिए भी ऐसा ही करें
ctrl और s कुंजी दबाकर फ़ाइल सेव करें
इसके बाद आइए इंजन बनाते हैं
canvas के बाहर क्लिक करें
circle tool चुनें और दिखाए गए अनुसार एक वृत्त बनाएँ
इस लेयर को enginepart1 नाम दें
इसका रंग बदलकर गुलाबी करें
फिर rectangle tool पर क्लिक करें और वृत्त के ऊपरी हिस्से पर इसे आधा ढकते हुए एक आयात बनाएँ
इस लेयर को enginepart2 नाम दें और इसका रंग बदलकर पीला करें
इस आयत के ऊपर एक और आयत बनाएं
इस लेयर को enginepart3 नाम दें और इसका रंग बदलकर हरा करें
उसी rectangle tool का उपयोग करके दिखाए गए अनुसार खिड़की बनाएँ
इस लेयर को enginewindow नाम दें
इंजन की सभी लेयर चुनें और उन्हें ग्रुप करें
फिर इसे engine नाम दें
ctrl और s कुंजी दबाकर फ़ाइल सहेजें
डिब्बे की ड्रॉप डाउन सूची में से किसी एक पर क्लिक करें
wheel1 और wheel2 दोनों ग्रुप लेयरों को चुनें और कॉपी करें
engine group layer में पेस्ट करें
shift key का उपयोग करके इन पहियों को इंजन के नीचे ड्रैग करें
अब शीर्ष रुलर से एक guideline ड्रैग करें और इसे डिब्बों के नीचे रखें
यह guideline डिब्बों और इंजन को एक पंक्ति में संरेखित करने में हमारी मदद करेगी
फिर engine को compartment1 के नज़दीक लाएँ और संरेखित करें
फिर सभी डिब्बे लिंक करने के लिए एक आयत खींचे
लेयर को belt नाम दें और इसका रंग बदलकर काला करें
belt layer को layers सूची के निचले हिस्से में ले जाएँ
अंत में आइए पटरी बनाते हैं
rectangle tool पर क्लिक करें
यहाँ दिखाए गए अनुसार पहिए के नीचे एक आयत बनाएँ
लेयर का नाम बदलकर rail करें और इसका रंग बदलकर black करें
अब ट्रेन की ड्रॉइंग पूर्ण हो गई है
अंत में ctrl + s दबाकर फ़ाइल को पुनः सेव करें
इसके साथ ही यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है
आइए सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
मूल आकृतियाँ बनाना
आकृतियों में रंग भरना
ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप एवं डुप्लिकेट करना तथा
guideline का उपयोग करके आकृतियों को संरेखित करना
यहां आपके लिए एक असाइनमेंट है
इस ट्यूटोरियल में बताए गए अनुसार synfig में एक बस बनाएँ
आपका पूर्ण किया हुआ असाइनमेंट ऐसा दिखाई देना चाहिए
यह वीडियो spoken tutorial प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
कृपया इसे download करें और देखें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन परीक्षण पास करने पर प्रमाण पत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया अपने समयबद्ध प्रश्न इस फ़ोरम में भेजें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है
इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है
आईआईटी बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद